सड़क के बराबर में एक पत्थर पड़ा है और एक खंभा भी गड़ा--

इस फोटो में एक कमरे में काली कलर की टाइल बिछी हुई है।

ऊपर के साइड कुछ लाइटिंग का सिस्टम भी लगाया गया है।

इसमें एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसने अपना हाथ उपर उठा रखा है।

यहां कुछ व्यक्ति भी बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं दुकान के बाहर।

यह फोटो किसी स्कूल के बाहर ग्राउंड से लिया गया है।

और इसमें एक व्यक्ति के फेस को ब्लर किया गया है।

यह किसी डॉक्टर की दुकान जैसा दिखाई देता है।